इस फोटो में मुझे फूलों के खेत दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे साइकल और बाइक दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे लड़के महिला दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बिजली के--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

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे आलमारी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो मैं मुझे कैमरा दिखाई दे रहा--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

इस फोटो में मुझे फूग्गों की सजावटे दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पुरूष दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे फ़ूग्गो की सजावटे दिखाई दे रही है।